बहुत सारे चीजे नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ बैग नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ धूप पड़ने की वजह से वो ग्राउंड पूरा ही सुन्दर लग रहा है। वो ग्रीन कलर की है और वहाँ पे धूप पड़ने की वजह से वहाँ का लोग नजर आ रहे हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है।

एक गेट नजर आ रही है जो कि पूरा ही ब्लू कलर की है। उसमे डिजाइन्स किये गए हैं और यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है। नीचे का जो जगह है वो थोड़े से पानी की वजह से थोडा सी --

शॉप है | यहाँ पे लिखा हुआ है उसमे बोहत ही सुन्दर लाइट जल रही है | यहाँ पे बड़े -बड़े पोस्टर और बेनर्स लगे हुये हैं | यह रात का समय है तो बाहर का जो हिस्सा है पूरा ही अँधेरा है ।

छोटे छोटे पुतले नजर आ रहे हैं सभी ने टोपी पहनी हुई है सबका टोपी का कलर अलग हैपीछे दो मछलियां नजर आ रही हैं जो कि बहोत ही सुन्दर कॉफ़ी कलर से डिजाईन किये गये हैं यहाँ पे लाईट जल रही हैं और ये जो --

सुन्दर नज़ारा है । यहां पर बोहत सारे बहार में डेकोरेशन हुई है जो डेकोरेशन हुई है उसे छत्ते के जैसा बनाया गया है और उसमें बहुत ही सुन्दर लाइटिंग की गयी है नीचे भी लाईट जल रही है। यहाँ पे स्ट्रीट लाईट जल रही है ।

और रास्ता जो है पूरा पीचे पीछे रोड कि है। पीछे थोड़ी ग्रीनरी नजर आ रही है और ये रोड पूरा ही बिजी है और इन सब के जान वाहनों के अंदर बोहोत ही लोग नजर आ रहे हैं।